ये बहुत बड़ा कोई घर दिखाई दे रहा है जैसे प्लेटफॉर्म हो छाता लगा हुआ है मोहमडम सब है टोपी पहने हुए है।

वैसे मोविल स्पेयर पार्ट्स ऊपर छतरी लगा हुआ है एक माला भी टंगा हुआ है।